शॉप में शरद मेडिकल स्टोर दवाइयां दिख रहा है।

चित्र में मुझे छोटी छोटी मछलियां दिखाई--

मैं देख पा रही हूं मुझे एक चित्र दिख रहा है।

चित्र में मुझे द किट रेस्ट दिखाई दे रहा है चित्र में लाइट फैन --

मंदिर दिखाई दे रही है चित्र में मुझे कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

गार्डन दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे--

चित्र पे मुझे एक बिल्डिंग दिख रही हैं।

ये बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे कई सारी टेबुल र--